एक पेट्रोल-पंप की फ़ोटो है जहाँ पे बहुत सारे लोग पेट्रोल भराने आये हुए हैं। एक ऑटो वाला आया है और दो एक स्कूटी वाला और एक बाइक वाला आया हुआ है। साइड में ऐ --

एक डॉगी है जो बैठा हुआ है एक आदमी के हाथ में दो बोतल हैं और यहाॅं पर बोर्ड लगा हुआ है सर्वो का बड़ा --

ओ गाँव के घर के साईट के फोटो है जिसमे साइड में जंगली पेड़ लगे हुए है सामने की तरफ छोटे-छोटे घर बने हुए है ईंटो के और एक बड़ा-सा पेड़ दिख रहा है।

पिंक कलर की टॉय ट्रेन और एक रेड कलर की चेयर भी रखी हुई है और डेकोरेशन भी किया हुआ है और एक गेट है अंदर जाने --

पर ए कंपनी की फैक्ट्री हैं जो भाईताज प्राइवेट लिमिटेड करके है। जो बड़ी सी ब्लू कलर के टिन शेल से बनी बनी हुई हैं।

पोस्टर लगे हुए हैं एक अंबेडकर जी का स्वामी विवेकानद जी का भी पोस्टर लगा हुआ है ।